यह तस्वीर में एक समारोह की दृश्य दिखाई दे रही है।

कई विभिन्न विभिन्न रंगों के प्लास्टिके दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में कुछ इमारतों की दृश्य दिखाई दे रही है।

इमारत का रंग सफेद है एवं उसमें कई नीले रंगों से भी रंगा गया है और कुछ पेड़ के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में एक दुकान की अंदरये हिस्से की दृश्य दिखाई दे रही है।

जिसका दीवार का रंग सफेद रंग से रंगा गया है एवं उसका प्रवेश द्वार काली रंग की है और उसके अंदर एक लाल रंग का कार भी लगा हुआ है।

एवं फर्श ईंट की बनाई हुई दिखाई दे रही है।

और उस पे कई सामानें भी रखी हुई दिखाई दे रहे हैं और कई लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

फार्स टाइल्स की मदद से बनी हुई है जो काफी स्वच्छ दिखाई दे रही है।

इसका शोइंग बोर्ड पे स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

कुछ प्रिंटर एवं कलम कपिया भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं और एल_ई_डी स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है।

एवं जमीन पे भी कई घासे लगी हुई दिखाई दे रही है।

और कुछ कपड़े टंगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

वह काले रंग की कमीज और काले रंग का पैंट पहना हुआ है।

एवं वह सफेद एवं पीले रंग की पर्दो से सजाए गए हैं।

जहां कई बड़े बड़े रैके बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे लाल रंग के कुर्सी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कमरे की दीवार सफेद रंग से रंगी गई हैं एवम् सीलिंग पे कुछ पंखे भी टंगे हुए दिखाई दे रहे है और --

काले रंग का प्लेट भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ खाने का सामान रखा हुआ है।

और सामने एक छोटी पुल भी बनायी गई है।

टेबल पर कई बोतले एवं काले रंग के कटोरे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे दीवार में कई--

बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं जो खड़े हैं एवं कुछ बैठे हुए भी हैं।

इसका शोइंग बोर्ड पर नाम राजशाही चिकन मटन मछली शॉप है।

और कुछ समाने भी बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे एक बड़ी पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसका स्वयं पे है बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून --

और सामने दीवारों की रंग सफेद है और हरी भी है।